जो मेहमानों के लिए तैयार है।

के लिए बनाई गई है इसमें रोशनी और सजावट के साथ एक मंडप या प्रवेश द्वार जैसा ढांचा दिखाई दे रहा है।

आइसक्रीम और दूध जैसे उत्पाद बेचता है।

पिक्चर एक सफेद बाघ को दिखाती है।

अंदरूनी हिस्से को दिखाती है इसमें एक स्वागत--

दर्शाती है इसमें विभिन्न प्रकार के व्यायाम उपकरण और मशीने दिखाई जा रही है।

जिसमें हिंदी में व्यायाम शाला और इंग्लिश में ओपन जिम लिखा हुआ है।

इसमें दिवाल में कुछ शेल्व्स बने हुए हैं।

इस पिक्चर में बहोत से लोग नजर आ रहे हैं जिनके पीछे एक छोटा सा तलाब भी दिखाई दे रहा है।

यह पिक्चर एक प्राकृतिक नदी के दृश्य को दर्शाती है।

उनके पीछे एक नाव नजर आ रही है।

दाईं ओर एक निर्माण दे इमारत दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा--

रचनात्मक गतिविधियों के लिए एक जगह है कमरे में ह--

जिसमें ऊंचे खंबे और बड़ी खिड़कियां हैं जो प्राकृतिक रोशनी प्रदान करती है।

बीच वाली दुकान में रेड कलर का बोर्ड लगा है जिसपे पटेल अना--

लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।